इसके दोनों ओर दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जिसमे रंगबिरंगी बत्तिया लगाई गई है जो कि --

इस पार से उस पार आती जाती रहती है।

कॉलेज वगैरा और भी क्या-क्या है।